और ये जिसमें लोगों को क्लब में बहुत ही मजा आता है |

जैसे की कस्टमर आये और उनका दुकान की ओर ध्यान खिचे |

और पानी के बाद इसमें हाथ का भी प्रयोग किया जाता है |

हरी मिर्च का उपयोग यहाँ हर चीज़ में होता है।

सैलून के बारे में आज कल कौन ही नही जानता।

यह ईसामसी का इसाइओं --

यहाँ पे ठेले वगैरह लगे हैं फल फ्रूट के जो लोगो को जीस चीज़ की जरुरत होती है वो चीज़ --

एक सजावट की दुकान है यह --